जोकि किनारे में लगे हुए बहोत ही सुंदर और बहोत ही अच्छा दिखाई दे रहें हैं और बीच में लगी एक--

यह एक स्कूल है यहां पे स्कूल का नाम माता सुंदरी--

यह एक बाइक वॉशरूम वॉश करने वाला--

ये एक मंदिर की तस्वीर लग रही है जहां पे एक स्तंभ बना हुआ नजर आ रहा है।

यह एक ज्वैलरी शॉप है जहाँ पे बहुत सारे ज्वैलरी को एक व्यवस्थित रूप से कांच के डिब्बे में रखा गया --

अलग अलग प्रकार के यहां पे दुकानें लगी हुई हैं।

अलग अलग प्रकार की फूले दिखाई दे रही हैं।

बहोत हि सुंदर दिखाई दे रहे हैं जोकि एक अच्छा वातावरण का प्रदर्शित दिखा रहा है।

जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है और उसके पीछे--

यहां बहुत ऊंची मंजिल की बिल्डिंग है जो की बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

यह व्यवस्थित रूप से अनाज पर रखा हुआ है और--

कुछ अनाज को पैकेट में पैक करके रखा गया हैं और कुछ अनाज को खुला करके रखा गया हैं।

और यह पेड़ पौधे से एवं प्राकृतिक से बहुत ही सुंदर दिखाई दे--

और बहुत ही सुंदर तरीके से ये लोग मिल कर के--

यह एक किराने दुकान की तस्वीर है यहां पे--

और साथ ही यहां पे जिम में बहोत ही व्यवस्थित तरीके से दौड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक --

और यहाँ पहाड़ के उपर की ओर कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगी हुई दिखाई दे--